आस पास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पेड़ है। पीछे बहोत बड़ा मंदिर है और यह बहोत ही अच्छा नजारा है।

चारों तरफ हरे भरे पौधे है घास लगे हुए है बहोत बड़ा घास का मैदान है।

इस फोटो में चर्च हैं जो की बहोत ही सुंदर हैं।

प्लस का सिंबल बना हुआ है सामने एक फादर खड़े हैं बहोत सारे लोग बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं।

बाजू में पिअर पैनल वैनल लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक झरने की है जिनका ये चट्टानों के बीच से होते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है।

झरने का आनंद ले रहे आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक शॉप की जिसमें--

बहोत ही अच्छे-अच्छे पर्दे है लाल रंग पीला हरा नीला --

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक--

जो की सफेद रंग का शर्ट पहनी है ब्लू कलर का पैंट पहनी है उनके गले में आई_डी कार्ड भी है।